जैसा की आप देख पा रहे है सामने की ओर एक मेला लगा हुआ है।

पहने हुए है जीन्स पहने हुए है धारीवाली टीशर्ट पहनी हुए है काफी सारी वहाँ पे कोट पैंट रखे हुए है और --

काफी सारे जूते चप्पल वहाँ दुकान के बाहर उतरे हुए दिखाई दे रहे है एक स्टूल भी रखा है।

जैसा की आप देख पा रहा है एक पूल दिखाई दे रहा है पूल के ऊपर रोड दिखाई दे रही है नीचे नदी दिखाई दे रही है।

लगी हुई दिखाई पिलर बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है और बादल भी दिखाई दे रहे है और बादल काफी घने है।

सभी लोक कागज पत्र लिए हुए है और रक्तदाता मतलब रक्त अभियान --

जैसा की आप देख पा रहे है सामने एक केक रखा हुआ है केक में काफी सारी बिस्किट लगी हुई है।